एकदम आसमान दिख रहा है बच्चे वहां पर साइकिल चला रहे है।

यहां पर एक पान की दुखान दिखाई दे रही है मुझे।

भी खड़ा है अलग-अलग वैरायटियों के पान भी दिखाई दे रहे हैं उस --

यहां पर एक काले कलर की गाय दिखाई दे रही है मुझे और।--

अ कटोरे टाइप टब में और वो अभी दूध देने के लिए तैयार है।

गमला रखा हुआ है पेड़ भी है और वॉइस निकालने का भोपू भी लगा है पिरामिड भी लगा हुआ है।

अ जहां पर बहोत सारे लोग वाइन परचेस करने के लिए भी आए हैं कुछ लोग वहां पर खड़े हैं एक पेड़ भी हैं।

साइड बहोत कलरफुल चेयर्स रखी हुई है बहोत लोग खड़े हैं बहोत टेंपटिंग लाइट भी है।

लग रहा है बहोत लोग खाना खिला रे हैं सामने कुछ महिलाएं बैठी है जिनके सर पर कुछ मुकुट टाइप का लगा हुआ है और सामने कुछ--

यहां पर एक कुछ गार्डन टाइप का दिख रहा है जिधर गेट लगा हुआ है और ब्यूटीफुल एकदम--

यहां पर एक रैक है एक रैक बहोत सारी रैक है जिसके अंदर बहोत सारे आइटम रखे--